पीछे में कुछ पेर है और--

ये एक फोटो है जो--

जहाँ पे एक गोल पेंटिंग किया है।

और साइड के दीवार में कुछ सर्टिफिकेट्स हैं।

यह एक फोटो है जो--

किसी बुक स्टॉल का दिखाई दे रहा--

ये एक फोटो है और--

पुल से लिया गया है और--

काफी दूर से है इसलिए कुछ--

कुछ लोगों का भीड़ है।

ये एक कोई फोटो है जो--

किसी पार्क का है और--

और एक आदमी भी है।

दौड़ रहे हैं और यह--

यह एक फोटो है और--

इसमें कुछ फोल्स है।

फूल के माला है यहाँ पे लटके हुई।

यह एक फोटो है और--

दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर और--

पीछे रैक पर कुछ कप है।

किसी कॉफी शॉप का लग रहा है और--

यह एक फोटो है कहीं का और--

एंट्री गेट खुला हुआ है और--

एक सरस्वती बुक सेंटर भी है।

ये एक फोटो है और--

किसी होटल या रेस्टोरेंट का--

लगाया हुआ है और बहुत सारे बैलून है।

ये एक फोटो है जो किसी खिलाने का दुकान का है।

बहुत सा सामान यहाँ पे टाँग हुआ है।

कुछ लाइट है जो जल रहा है।

और एक बड़ा सा पाइप भी है रखा--

बहुत सारे डिजिटल लाइट्स लगे हुए हैं।

बहुत सारे टेबल और कुर्सी भी है।

सामने एक प्लेट है वाइट --

यह एक फोटो है जिसमें कुछ मुड़गियां हैं।

एक बाइक है जो कि प्लास्टिक से ढका हुआ है।

यह एक फोटो है और --

बहुत सारी मुड़गी है यहां पे --

मुर्गी ढेर सारी और पीछे कुछ बच्चे--

किसी पटना साहिब का और--

मुस्लिम का कुछ एरिया है यह और एक --

आदमी है जो बाल्टी लिए जा रहा है।

यह एक फोटो है जो किसी क्लासरूम का है और--

बहुत सारे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।

यह एक फोटो है जिसमें तीन छोटी बच्ची हैं।

पीछे ब्लैक कलर का पर्दा है लगा हुआ ।

श्री कृष्ण पोर्य का डाकं घर के नाम से है यह पोस्टर --

कुछ टेबल और कुर्सी लगाए हुए --

लगाया हुआ बीच में एक छोटे से गमले में है।

ये एक फोटो है जो--

यहां पे कुछ टेबल्स है जिसके ऊपर बुक्स रखा हुआ है।

जो कि पढ़ा रहा है वाइट बोर्ड लगाकर--

और जो कि बैग लिए हुए हैं सब लोग--

ये एक फोटो है जो किसी मेडिकल स्टोर का है और --

ये एक फोटो है जो किसी मार्केट का है और काफी भीड़ है और जग-मग लाइट भी है।

और सामने में एक बिजली का खंबा जिसमें बहुत सारे तार भी हैं।

और लाइट्स है।

ये एक फोटो है जो किसी बुक हाउस का है और ढेर सारा बुक्स है यहाँ पे।

और आगे में कुछ बाइक्स है लगा हुआ।

पीछे की तरफ पानी का टंकी है और--

ढाबा अंदर की तरफ जो है लाइट बहुत जल रहे हैं।

एक आदमी है जो बैठा हुआ है।

और जिसके बीच में शीशा का गेट लगाया हुआ है ।

ये एक फोटो है किसी होटल के बाहर का--

बैनर लगा हुआ है होटल होम प्लेस का--

और कुछ छोटे गमले में पौधे भी ये लगाये --

पीछे ढेर सारा सामान है ।

चिल्ड्रंस बुक लिखा हुआ है और --

ये एक फोटो है जो किसी खाली एरिया का है और कुछ कार्स हैं यहां पे जिसमें दो सफेद हैं और --

कुछ लोग हैं जो जमीन में बैठे हुए हैं ।

और कुछ लोग हैं ।

यह एक फोटो है और --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

और जो कि गुलाबी रंग का सूट पहनी है पीछे भी एक पिलर है और कैमरा लगा हुआ है ।

और कुछ लोग हैं जो दूर में दिखाई दे रहे हैं ।

यह एक फोटो है किसी भवन का और --

कुछ चेयर्स रखे हुए हैं ।

एक आदमी है जो बैडमिंटन खेल रहा है।

और पीछे ढेर सारा पेड़ पौधा भी ये लगाया हुआ है।

ये एक फोटो है जो किसी ऑफिस --

सर का ब्लॉक है और बाहर में कुछ लोग हैं खड़े --

और कुछ साइकिल और बाइक्स भी लगाए हुए हैं।

पीछे की तरफ लाल कारपेट है और--

जमीन का टाइस पे है ब्राउन बॉर्डर --

ये एक फोटो है स्टेशन के पास का --

और कुछ लोग भी हैं स्टेशन पे--

जो बैठा है ट्रेन के इंतजार में ही शायद--

एक तरफ कुलर भी लगाए हुए हैं दो।